घर की बिलडिंग में पीले रंग का पेंट लगा है ।

और ऑटो दिखाई दे रहे है।

यहाँ सामने में बहोत सारे जानवर दिखाई दे रहे है।

यहाँ सामने में एक दूकान में फूलो की माला रखी दिखाई दे रही है ।

और लोहे की ग्रिल दिखाई दे रही है।